अग्रह्वा इंटर कॉलेज है पचैन्डा रोड पर।

खाने-पीने का सब सामन मिलता है। कही दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता।